इस इमेज में मुझे मुझे एक स्कूल दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी लड़कियां बैठी हुई दिखाई दे रही है जोकि हम्म कुछ कागज रखे हुए कैंची से काटती हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे बहुत सारे लड़कियां दिखाई दे रही है एक मैडम दिखाई दे रही है एक मोटी लड़की दिखाई दे रही है जिसने सफेद टी-शर्ट पहनी है ब्लू पेंट --

झंडा दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रहा है केले पड़े दिखाई दे रहा है बहुत सारे आदमी ग्राउंड मै खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उपर लगी हुई है जर्किंग पहने हुए है टाई लगा हुआ है और --

इस इमेज मे मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जो की एक ब्लू कलर का है एक शटर लगी हुई है तीन आदमी दिखाई दे रहे है एक मोटर सायकल और एक कार का काँच दिखाई दे रहा।

इस इमेज में मुझे मिट्टी सी लगी हुई दिखाई दे रही है टेबल पर। एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कुर्सी पर जो कैंची से--

मुझे एक क्लास दिखाई दे रही है क्लास मे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है जो की इस्टुल पे कुछ रखे हुए है टेबलो पे और कुछ बनाती हुई दिखाई दे रहे है कागज का।